एक ट्रैक्टर स्टेशन है और यूनाइटेड ट्रैक्टर शामली ये शामली में है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें बहुत सारी टेबल और कुर्सियां धरी हुई हैं।

बेस धरा हुआ है और उसके पीछे एक शटर बंद है और बीच में एक दुकान खुली हुई है और उस--

तीन बंदे टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं।

मिस्त्री के सामान मैकेनिकल सामान धरा हुआ है।

पीछे एक यहां पर बहुत ही इमारत बनी हुई है जो लाइटों से सजी हुई है।

और राइट साइड में कुछ पहाड़िया दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहुत सारे टायर्स धरे हुए हैं और सामने सड़क पर कुछ बाइके खड़ी हुई हैं।

कुछ यहाँ पर सरियो मे बिम पड़े हुए है जो अभी काम आधे मे ही रोक रखा है।